और दूर दूर तक पेड़ पोधै फैले हुए हैं।

जहां बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

जिसने सफेद शर्ट पहनी हुई हैं।

दूसरी तरफ खिड़कियों पर परदे लगे हुए हैं।

शॉप के बाहर कुछ सामान भी रखा हुआ--

और यहां कुछ लोग खड़े हैं।

बीच में पर्पल रंग के लाईजोल है।

नीचे ग्रीन कारपेट बिछा है।